यहाँ लोग गाड़ी बनाने के लिए आते है।

यह दुकान फूटपाथ में लगाई गई है।

यह एक रोड है ।

प्रखंड इकाई का बोर्ड लगा हुआ है।

इस बस की नम्ब --

सेवनटी नाइन नाइनटी थ्री यह बस की नंबर हैं यह बहुत --

यह ए.टी.एम. बैंक ऑफ़ बड़ौदा का है।